छत पर बहोत सारी मार्बल भी दिखाई दे रहा है।

पर अलमारियों का कलर अलग अलग दिखाई दे रहा हैं।

रोड पर एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक लोहे का गेट भी लगा हुआ दिखाई दे--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

यहां पर बहुत सारी जैकटें भी दिखाई दे रही हैं यहां पर बहुत सारी लाइटें भी दिखाई दे रही हैं।

मेरे सामने एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर बहुत सारे लड़के भी दिखाई दे रहे।

शोरूम में बहुत सारे शीशे भी दिखाई दे रहे हैं शोरूम में बहुत सारे--

कुछ खम्बे भी दिखाई दे रहे है यहा पर दो आदमी भी दिखाई दे रहे है।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

यहां पर कुछ आदमी भी दिखाई दे र--

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

गोदाम भी दिखाई दे रहा है गोदाम की दीवार व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है यहां पर एक साइकल भी दिखाई दे रही है यहां पर एक रेहड़ी भी दिखाई --

मेरे सामने एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है यहां पर बिल्डिंग में बहुत सारे पोल भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

फिर ये मार्केट मे बहोत सारा समान भी दिखाई दे रहा है मार्केट मे कुछ ए_टी_एम भी लगे हुए दिखाई दे रहे है वहां पर एक--

प पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे ए_सी भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।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

सामने एक शॉप दिखाई दे रही है शॉप में बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारी--